यहाँ पर ए सेकंड फ्लोर पर ए कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक डी_जे दिखाई दे रहा है जिसमे शर्मा लिखा हुआ है उसके ऊपर एक डोरी जा रही है एक मकान दिखाई दे रहा है छत दिखाई दे रहा हैऔर बालकनी दिखाई दे रही है छत के अन--

यहाँ पे एकएक पक्क्षी हैं जो पानी के ऊपर चर रहा हैं एक उसका पाव ऊपर हैं यहाँ पे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं एक वहां पर वहां पर पानी भी दिखाई

और यहाँ पर यहाँ पर कुछ चीज़े भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर परदे भी लगे हुए है बहुत सार--

यहां पर खिड़की दिखाई दे रही है यहां पर दे खिड़कियां दिखाई दे रही है अलग-अलग फर्श के ऊपर वो सोफा सेट --

एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें अलग-अलग तरह की मूर्ती रखी हुई हैं एक अंकल जोत जलाते हुए नजर आ रहे है इस में रूम में लाइट भी जली दिखाई दे रही है।